ये एक बहुत बड़ा होटल है ऊपर में होटल की एक खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें गोल्डन पर्दा दिखाई दे रहा है।

चेयर्स लगाए गए हैंगेस्ट के बैठने के लिए हैपीछे की तरफ में वाइट कलर के कपड़े से और फ्लावर्स --

पोमॉग्रानट ब्रोकलीस स्पेनज ब्रीनजल बोहोत सारा --

डस्टबिन नजर आ रही है दोपहर का वक्त है यहां बाहर की तरफ में एक पेड़ दिखाई दे रही है रोड में बहुत सारे कचड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे और ये दोपहर का वक्त बहोत खूबसूरत लग रहा है।

सोफे वाले चेयर भी हैं दो और सो रेड कलर का सोफा है वाइट कलर की टेबल है।

और उसमें नंबर भी लिखा हुआ है थ्री ज़ीरो सिक्स फाइव सेवन गाजियाबाद की ट्रेन है ये--